वहां पे जीन्स शर्ट टी-शर्ट घड़ी वगेरा रखी हुई है।

में कमान दिया गया है।

यहाँ की हवा बहुत ही शुद्ध होती --

इ मीट और प्याज और बहुत सारी सब्जियां दे के बनाया जाता है।

जा रहे हैं और कुछ मिल के आ रहे हैं।

इस सुपरमार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक का सामान है कपड़े हैं --

इस प्रो स्कूल के जरिए इंग्लिश को दिखाया गया है।

सबसे ऊपर मे एक घड़ी है जिसपे समय दिखाऐगा।

यह बिल्कुल सड़क के बीचों-बीच बनाया गया यह एक --